ये इमेज शायद एक गांव का इमेज है जहां पर मिट्टी से घर को जो है--

लगता है ये बढ़िया जगह है शायद बढ़िया से डांस सिखाते होंगे।

यहां पर व्हीकल्स के टायर लगते हैं वहां का लोकेशन है काफी अच्छे अच्छे नए नए टायर रखे हुए हैं।

ये सड़क एक हमारे चौराहे का बेस्ट सड़क है जहां पर एक टेंपो है और उसके अंदर कुछ माल भरे हुए हैं।

काफी बहोत बढ़ियां जगह व्यू है यहां पर नदी है।

ये इमेज तो एक होटल का इमेज है।

ऊपर से दिखाने के लिए है और नीचे ढाबा टाइप कुछ होगा--

ओ ये एक डी_जे टाइप का इमेज --

यहां पे गली गली में डी जे बजाते हुए जा सकते हैं।

और झूले भी रखे हुए है काफी अच्छा जगह गार्डन पार्क है पार्क टाइप का लग रहा है और इसमें--